नीचे कुछ गमले वैगरह भी रखे हुए है उनमे प्लांट्स लगे हुए हैं और यहाँ पर सामने से रास्ता गया हुआ है आने जाने के लिए ऊपर आसमान दिख रहा है।

यहाँ पर बहुत सारी नाव खड़ी हुई हैं जो लकड़ी की बनी हुई लग रही हैं और यहाँ पे नीचे पानी भी भरा हुआ है।